नीचे गार्डन में हरियर भारी घास है छोटी छोटी साइड में कुछ पेड़ है कुछ सूखे हुए है डार्क ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे है।